और अच्छी भी है यहाँ पे एक पटिया बिछाया हुआ है उस पर बैठाया हुआ है और मंदिर भी है दिखने में बहोत हैंडसम है ढेर सारा मंदिर है और देखने में बहोत अच्छे लगते हैं।

यहाँ पे देखिए बहुत ही इंसान है। एक भाई साहब टेबुल पर बैठा हुआ है और ढेर सारा।

उम देखने में एक दो तीन चार मंजिला का मकान भी दिखाई देता है। यहाँ पे मंदिर भी बहुत अच--